ऊपर आसमान दिख रहा है एक साइड और एक छोटा पेड़ है छोटी-छोटी झाड़ियां हैं।

आगे झुक रहे हैं पीछे पेड़ है आसमान खुला है।

पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है।

ये एक बेडरूम का फोटो है।

आगे छोटे-छोटे गा घास है।

ये एक बहुत बड़ा शोरूम है कपड़े का।

कुछ रेड कलर की साड़ियां हैं।

ये एक खुला समुंद्र दिख रहा है।

इसमें म्यूजिक का प्रोग्राम चल रहा है।

एसी लगा हुआ है ब्राउन कलर की वाल है ब्लैक कबर्ट है।

नीचे गोल-गोल बड़े-बड़े गमले हैं पत्थर के--

यहां पे मुझे एक कॉफी शॉप दिख रहा है दो आदमी बैठे हैं।

पानी हैं दूसरी जगह कांटेदार झाड़ियां हैं।

ओनर की एक बड़ी टेबल दिख रही है।

नीचे दूसरी साइड छोटी-छोटी घास है।

ये एक बड़ा ग्राउंड उसमें पेट्रोल पंप है दो-तीन गैरेज हैं।

पीछे बहुत सारी कुर्सियां हैं एक आदमी खड़ा है एक पोस्टर --

ये एक पोस्ट ऑफिस का ऑफिस है जो अंदर से दिखा रहे हैं।

कुछ बच्चे वाइट ड्रेस पहन के उनके पीछे खड़े हैं।

के पीछे बहुत बड़े झाड़ है।

गेट है येलो कलर का पोस्टर बना हुआ है।

एक साइड में लाल फूल है एक साइड में पीले फूल हैं।

दो तीन लाइटस लगी हैं ब्राइट कलर की।

ये मुझे एक खेलने दुकान दिख रही है जिसमें खेल का सामान पड़ा हुआ है।

जिसमें ब्लू कलर का ऊपर का हेड है।

के पीछे बिल्डिंग है दो-तीन।

पटरियां दिख रही हैं ऑरेंज कलर का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है।

ऊपर एक शेड बना हुआ है पत्थर का।

एक लेटर बॉक्स है जिसका कलर लाल है।

ऊपर चलने के लिए सीट साइडियां हैं।

ये एक बहुत कलरफुल रोड है ओपन है।

सामने बड़ी छोटी बिल्डिंग्स हैं आकाश दिख रहा है।

कुछ खरीद रहे है कुछ जा रहे हैं।

यहां पे मुझे एक बहुत सुंदर नर्सरी दिख रही है बहुत बड़ी है।

ये एक अंदर मॉल का दृश्य है।

ब्राउन कलर के शेड के दुकान है।

दो नंबर भी टू बड़े नंबर से लिखा हुआ है।

साइकिल पे जा रहे हैं बाइक पे जा रहे हैं।